पीछे एक बड़ा सा बॉल जल रहा है पानी पीने वाला जार है।

सामने बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है सामने एक लड़का और एक बूढ़ी दादी जा रही है।

एक आदमी जा रहा है बैठने के लिए बैठकी बहुत सारी बनाई हुई है।

बगल में घर है लंबा सा जो पीला कलर का है आधे दीवाल में टाइल्स लगा दिया गया है।

इस पिकस में एक बड़ा सा मूर्ति है जो बहुत सारे फूल मालाओं से ढकी हुई है।

आधे दिवाल में सफेद टाइल्स लगा दिया गया है।

डोर का गेट खुला हुआ है।

सामने एक और गेट है जो सफेद कलर का है जिसमें ओ_टी लिखा हुआ है।

ऊपर लाइन वाला पाइप पार हुआ है पीछे ट्रांसफार्मर है और पेड़ भी है।

सामने गेट खुला हुआ है बगल में भी और खिड़कियां है।

और प्रज्ञा केंद्र भी लिखा हुआ है करकट का बना हुआ है।

मंदिर के ऊपर माता रानी को बनाया हुआ है।

बहुत सारे लोहे बिछाए हुए हैं रेड इसमें हो जो कि भूरा कलर का हो चुका है।

बहुत सारा पत्र दिख रहा है एक मिस्त्री काम कर रहे हैं।

एक काली पुरान सीढ़ी है जिसपे कुछ रखा हुआ है।

पीछे ढेर सारा पोस्टर टंगा हुआ है।

एक सोफा है जो की पुराना लग रहा है उस पे ब्लैक और ग्रे कलर का बैग रखा हुआ है।

इस वृक्ष में एक बड़ा सा तालाब दिख रहा है जो कि बेहद ही सुंदर लग रहा है।

गला में हेडफोन है ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ है।

इस पिक्स में एक लंबा पोस्टर दिख रहा है जिसमें किसानों को बतलाया हुआ कुछ डायरेक्शन है।

कुछ डायरी रखी हुई है कुछ फोंस रखे हुए है कुछ गिफ्ट्स रखी हुई है।

पहाड़ बहुत ऊंचा है एक छोटा सी पहाड़ है पूरा अंधेरा टाइप का है।

इस पिक्स में एक रूम है जहां पर ढेर सारा मोबाइल इंटरनेट यूसेज सामान रखा हुआ है।

चदरा बिछाकर उसपे सीमेंट मिला रहा है।

नीचे ड्राम रखा हुआ है पीछे कुछ पेड़ पौधा है।

इस पिक्स में ढेर सारी सब्जियां रखी हुई है जो की बेहद सुंदर तरह से सजाई हुई है।

इस पिक्स में टोटे का डिलीवरी हो रहा है जो सारथी कंपनी का है।

इस पिक्स में रिसेप्शन लिखा हुआ है।

पीछे ढेर सारी लाइट जल रही है सीलिंग पे।